हॉस्पिटल है इसका नाम है यदुवंशी हॉस्पिटल और इमर्जेन्सी ट्वेंटी फोर बाय सेवेन नाम लिखा हुआ है और वहाँ कुछ --

यहां तो तीन लोग हैं और यहां तो पेड़ पौधा ज्यादा दिख रहा है ये तो उम् एक पा--

और वहा तो एक काला रंग का दीवार भी दिख रहा है और टेबल पर कुछ लाल रंग का कुछ है।

और वहां दूर से ना कुछ सामान दिख रहा है ये तो टेबल टेक वुड का टेबल है और वहां--

पिंक कलर का फूल तो ज्यादा आछ्या दिख रहा है और व्हाईट कलर का सफ़ेद कलर का भी है और इसमें कुछ बैलून्स भी दिख रहा है.

ये तो एक ट्रैक्टर शोरूम है या तो लाल रंग का ट्रैक्टर है इसके उपर धुँआ जाने का अ वो पाइप भी है।

यहाँ तो कुछ बोर्ड है रेड टेप नाम लिखा हुआ है इसपे ये अंदर से दा अ ग्लासेस से वो लाईट्स है ना ज्यादा चमकते दिख रहा है।

इसमें तो गोल्ड कलर ज्यादा दिखा रही है और वहां ऊपर लाल रंग का है और ये बिल्डिंग तो ज्यादा बढ़िया बिल्डिंग है।

यहाँ है और वहा एक पेड़ भी आगयी है बिल्डिंग के ऊपर और वहा एक गाड़ी भी है और कला रंग का एक कार है और वहा एक आदमी दिखा रही है।

ये सब लोग वर्क कर रही है वर्कर्स है सब इसमें तो औरत ज्यादा औरत है और दो आदमी भी है और वहां--

तो यह तो अभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पीछे एक पेड़ पौधा दिख रहा है।

अ वो अ ऑरेंज कलर का साड़ी पहना हुआ है वो तो कल्चर एक्टिविटी जेसी है ।

और यहाँ तो नीचे सबकुछ अ मिट्टी सब कुछ दिखा रही है और वहाँ कुछ अ घास भी दिख रहा है।

ये तो कुछ अअ रूम जैसा लग रहा है यँहा तो कुछ बैठने के लिए सोफा है और दूसरा सोफा भी दिख रहा है यँहा तो --

ये तो कुछ स्कूल की फंक्शन जेसी लग रहा है यहा तो स्कूल का बच्चा सब कुछ बेठा हुआ --

यहाँ ज्यादा लोग है एक आदमी पिंक शर्ट पहना हुआ है और यहाँ ज्यादा लोग बाल बालाजी को दिया है गंजा लोग ज्यादा है यहाँ और औरत भी गंजा है।